मशीनें रखी हुई हैं जहां पे एक आदमी खड़ा है।

यहां पे एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहां पे एक आदमी खड़ा है।

यहां पे गोल गोल कुएं जैसे बने हुए हैं कुछ लम्बाई में बने हैं।

बाहर बहोत सारी स्कूटी मोटरसाइकल खड़ी हैं जो सफेद और काले रंग की हैं।

बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं आसपास खेत हैं।

यहां अंदर स्टैचू लगा हुआ है जिसने फ्रॉक पहन रखी है।